कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। इससे लोग ए_टी_एम को हमेशा अपने साथ में लिए रहते हैं।

ता है जल्दी इस वजह से यहाँ कपडे की क्वालिटी अच्छी होती है यहाँ से ही सब लोग कपडे लेके जाते हैं।

बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं।

यहाँ पे हर एक बुक फुटकर में बिकता है। इसलिए यहाँ बोहोत भीड़ होती है।

बुक की दूकान पे जहाँ पेन पेंसिल इरेज़र शार्पनर कटर यहाँ हर एक चीज उपलब्ध रहता हो।

नदी के किनारे पहाड़ है।

पत्थर है इसलिए यहाँ घूमने वाले लोग ज्यादा आते हैं।

यहाँ पे जिम का क्लास चलता है।

यहाँ पे बच्चे दूर-दूर से खेलने के लिए आते हैं।